यहाँ आई_सी_आई_सी_आई बैंक लिखा हुआ है जो चोबीस आवर ए_टी_एम खुला रहता है।

एक घर है जिसमें कई सारे फ्लैग लगे-- एक यह है उसके बाहर में एक सिटी रिक्शा खड़े हैं और कई सारे बाइके भी खड़ी है उधर बैलून्स से डेकोरेटीग भी किया गया है।

और ऊपर एक बड़ा सा टावर दिख रहा है और एक छोटा पोल भी दिख रहा है और आसमान भी दिख रही है और पोल में काफी सारे तार भी लटके हुए दिख रहे हैं काफी ज्यादा अच्छा लग रहा--

और चेयर लगी हुई है ऊपर में तीन ब्लैक कलर की और लाइटे भी लगी हुई है और एक छतरी भी लगी हुई है टाटा स्काई का।

स्टेट बैंक ए.टी.एम. है और उसके बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है और काफी ज्यादा पोस्टर लगा हुआ हैं उसके बाहर और काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और गेट दिख रही है और उस पे क्या ही बोले अब और चप्पल पहन के खड़ा है।

फंक्शन हो रहा है शायद चर्च है और यहाँ पर फैन लटका हुआ है और काफी ज्यादा डेकोरेटिंग किया हुआ है और बैलून काफी ज्यादा--

और ये स्कूल काफी ज्यादा सुंदर है और यहां बहुत सारे फ्लैग भी लगे हुए हैं। और काफी अलग- अलग कलर के फ्लैग सब लगे हुए हैं और यहां पे पोल दिख रही है और आसमान दिख रही है और पेड़ दिख रही है काफी सुंदर--

दो आदमी खड़ा हुआ है और ग्रीन कलर का पेंट किया हुआ है और टीना लगा हुआ है काफी ज्यादा बड़ा दिख रहा है जगह स्पेस बहुत है।

ओर पीछे भी बुक सब रखी हुई है और पेने रखी हुई है और स्टिगरस वगैरा रखे हुए है और किताबें रखी हुई भी है और कॉपियां भी रखी हुई है काफी ज्यादा सुंदर और बड़ा सा--

बुकिंग लिखा हुआ है और बहुत सारे आदमी सब भी है काफी ज्यादा सुन्दर सा मेला लग रहा है और काफी ज्यादे स्टोर्स वगेरा भी है खरीदने के लिए और यहा पे बहुत सारे तार भी लटके हुए है और आसमान भी दिख रही है पेड़--

डिज़ाइन भी किया गया है। रेसीडेंटल भी ऊपर मे लिखा गया है। सी_बी_एस_सी बोर्ड है। काफी ज्यादा सुन्दर सा हमे लग रहा है एंट्रेंस।

यहाँ बहुत बड़ा सा टावर दिख रहा है वाईट कलर का और पोल भी दिख रही है वाईट कलर की और ग्रीन कलर का पेड़ है और आसमान है और तारे दिख रही हैं।